सेल्फी ले रहा है और दूसरा लड़का उल्टा मुड़कर खड़ा हुआ है जिसकी परछाएं --

और कुछ दरवाजे भी दिख रहे हैं और दरवाजों के बगल में खिड़कियां भी दिख रही है।

और ऊपर के तरफएक बैनर लगा हुआ है।

और तीन कारें दिख रही हैं।

मुझे एक बेड भी दिख रहा है जो छोटा है।

और साइड की तरफ मुझे कुछ चेयर नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे झंडा फेहरता हुआ दिख रहा है।

यहां पर शायद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है।

प्लांट और गमले भी नजर आ रहे हैं।

जिस पर मिट्टी कलर का और डार्क भूरा कलर का रंग किया हुआ है।

एक मैट बड़ा सा बिछा हुआ है उसमें कुछ लोग--

जो कि लकड़ी से घेरे हुए एक छोटे से दीवार के ऊपर है।

जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और सामने के तरफ दो लड़के फोटो ले रहे हैं।

और पीछे की तरफ मुझे एक बहुत बड़ा सा मिरर दिख रहा है।

यहां पर मुझे छोटा सा लेडीज कॉर्नर नजर आ रहा है।

पैकेट लटके हुए हैं जो शैंपू के और का काउंटर पर मुझे पाउडर नजर आ रहा है बिंदिया नजर आ रही है।

यहां पर मुझे एक बलून से सजा हुआ कुछ नजर आ रहा है।

बैलून सफेद कलर का और लाल कलर का है।

यहां पर मुझे एक खुला हुआ एरिया दिख रहा है।

जो बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

और उसके भी पीछे मुझे दो टावर दिख रहे हैं।